--और ये व्यक्ति ब्लू कलर का शर्ट ओर चेक्स शर्ट और ग्रे कलर जीन्स पहना हुआ नजर आ रहे है।